एक ऐसी संस्था या एक ऐसा विभाग जो कि अपने आप में आधा गिलास भरा एवम आधा गिलास खाली वैसा सब दृश्य दिखा रहा है।

पर्यावरण को थोड़ा सा साइड करके मानव विकास का निर्माण होते नजर आ आ रहा है आ रहा है। ईटों का ढेर कुछ मजदूर और मजदूर लोग जो बेठे हैं वो कुछ नयी इमारत बनाने की कोशिश क --

जैसे की बाकी इमारत काफी ऊँची ऊँची होती हैं लेकिन यह इमारत अभी अपने शुरुवती दौर में है। जहाँ इसे बनाया जा रहा है और --